और इसके सामने एक रिक्शा जा रहा है वहाँ पर सेकुरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ--

मे आपको एक कॉफी की दुकान नजर आ रही है जहां पे कॉफी मिल रही है इस दुकान के सामने दो लोग खड़े हुए है एक आदमी--

और यहाँ पे पर्दे दिखाई दे रहे हैं और कुछ बेड्स भी दिखाई दे रहे--

इसमें कई सारे लोग खड़े हुए हैं एक बिजली का खंबा भी दिख रहा है उसमें कई सारे तांत लगे हुए हैं।

इस चित्र मे एक बैंक है और ओ बैंक के सामने कई आदमी खड़े हुए है और कई गाड़िया भी --

इस चित्र में आपको मछलियों का दुकान दिखाई दे रहा है मछली बाजार है ये--

--है और कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई है इस पुस्तक की दुकान पर श्री राजेश्वरी बुक लिंक करके बड़ा सा लिखा हुआ है।

ये चित्र एक फल की दुकान की है जहां पर बोहत सारे फल है और कई सारे मोसम्बी है अनार है और केले है।